ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ट्रिपल मंजिल की यहाँ पे बहुत सारी अनलिमिटेड बाइक खड़ी है जो अपन गिन ही नहीं सकते और जस्ट एक टॉवर दिख रहा है और ऊपर एक बहुत सारे क्लाउड्स भी दिख रहे हैं।

यहां पे बहोत सारे कुरकुरे भी टंग रहे है और एक मुझे ठेला भी दिख रहा है उस चीज का ठेला लग रहा है और जस्ट सामने एक रेड कलर की बाइक खड़ी हुई है।

ये एक जगह है जहां पे दो एनिमल्स दिख रहे है और एक बाउन्डरी है और अ पीछे बहोत सारे पेड़ लगे हुए ग्रीन कलर के और जो इधर बाउन्डरी के इस साइड जगह है लाइट कलर की ग्रास लगे हुए है।

और यहाँ बहुत सारी लकड़ियां भी पड़ी हुई हैं आस-पास और वॉल् के उस साइड भी पेड़ है।

यहाँ पर दो एलीफैंट्स हैं उसके सामने एक घर टाइप में दिख रहा है जिसमें जिसमें शटर लगी हुई है और वह दीवार का कलर ग्रीन है।

इस साइड पानी है जिसका कलर बहोत गन्दा हो रखा है येलो कलर का और उसके इधर एक बॉल है जिसके पीछे बहोत सारे पेड़ लगे हुए है ग्रीन कलर के।

यह एक रोड है जिसके सामने रेड कलर का कुछ बना हुआ है जिसमें ईंट वाली डिज़ाइन है और यहाँ एक प्लेन रोड दिख रहा है।

यहाँ आइट साइड पे प्लांट्स पेड़ भी दिख रहे हैं बहुत सारे यहाँ से एक ऑटो आ रहा है जिसमें एक अंकल बैठे हुए हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी ब्लैक पैंट पहने हुए हैं जो जा --

यह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गर्म कपड़े पहने हुए हैं ये लोग स्लाइडिंग कर रहे हैं बर्फ पे और यहाँ पर दो टंकी दिख रही है येलो कलर की --

यहा एक बिल्डिंग दिख रही है जिसके सामने बहुत सारे बैनर्स लगे हुए है जिसपे बहुत कुछ लिखा हुआ है यहा ऊपर सीढ़िया भी लग रही है ऊपर जाने के लिए इसका कलर एक क्रीम एण्ड येलो टाइप में --